एक रोड है रोड के किनारे एक लोहे का बड़ा सा जाल है जाल के पीछे एक दरवाजा दिखाई दे रहा है उसके पीछे कुछ बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं।

एक कैबिन है कैबिन में एक मेज पड़ी हुई है उसके साइड में तीन कुर्सियां रखी हैं।

एक दिवाल की साइड में कुछ लिखा हुआ है सामने अलमारी र दिखाई दे रही है।

सामने की साइड में बहुत स पानी दिखाई दे रहा है कुछ हल्के-हल्के पेड़ नजर आ रहे हैं पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

एक हॉल है हॉल में कुछ बहोत सारे डिब्बे रखे हुए हैं साइड में कुछ अलमारी रखी हुई है अलमारी में कुछ समान दिखाई दे रहा है।

दूसरी साइड में अलमारी में एक बाल्टी दिखाई दे रही है मग दिखाई दे रहा है डेस्टबिन रखी हुई है।

एक बैनर भी टंग रहा है उसके बराबर में एक भगवान जी का पोस्टर भी दिखाई दे रहा है।

एक हॉल है हॉल में एक आदमी खड़ा है उसके सामने--

अल्मारी में बहुत सी बुके रखी हुई हैं बुकों के बराबर में कुछ फूल भी रखे हुए हैं उसके नीचे भगवान जी की तीन मूर्तियां रखी हुई हैं किताब रखी हुई है घंटी दिखाई दे रही है।

एक हॉल है हॉल में पांच कारें खड़ी हुई हैं जिन जहां पर दो आदमी भी दिखाई दे रहे हैं।

कुछ सामान रखा हुआ है ऊपर के साइड में लाइट भी दिखाई दे रही है।

कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं पानी भी दिखाई दे रहा है।

बस स्टैंड है जहां पर चार लोग चादर ओढ़कर सो रहे हैं कुछ कुर्सियां पड़ी हुई हैं एक कुर्सी पर एक आदमी बैठा हुआ है तीन बसे दिखाई दे रही हैं।

एक रूम है रूम में कुछ कुर्सियां पड़ी हुई हैं जिनमें सात आदमी बैठे हुए हैं एक आदमी का हाथ दिखाई दे रहा है एक लड़की बैठी है।

तीन मिरर दिखाई दे रहे हैं एक मिरर में एक आदमी दिखाई दे रहा है।

और दिवाल की साइड में एक मेज रखी है मेज के पैर एक कंप्यूटर रखा हुआ है।

आदमी खड़े हैं एक आदमी बैठा हुआ है कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं कुछ घर भी दिखाई दे रहे।

सामने की साइड में एक बाइक वाला भी जा रहा है ऊपर कुछ मकान--

बहोत से जूते रखे हुए हैं कुछ कपड़े भी टंगे हुए हैं।

मेस दिखाई दे रही है उस एक आदमी का कंधा नजर आ रहा है मेस पर--

एक सॉस की बोतल रखी है टिशू पेपर रखे हैं।

दुकान के बाहर कुछ पेंट की बाल्टियां रखी हुई हैं।

कुछ सिड़ियां दिखाई दे रही हैं सिड़ियों पर कुछ गमले रखे हुए हैं जिनमें कुछ प्लांट्स लगे हुए हैं।

एक रोड दिखाई दे रही है रोड के सामने एक बैनर लगा हुआ है बैनर के सामने ही--

एक बिल्डिंग नज़र आ रही है बिल्डिंग के नी सामने अंदर --

एक आदमी है आदमी अब एक सेल्फी ले रहा है उसके हाथ में एक पानी के बोतल --

लीड पड़ी हुई है माथे पे टीका लगा हुआ है उसके--

पार्क दिखाई दे रहा है पार्क के सामने एक लकड़ी कम का झोपड़ी बनी हुई है जिसमें एक आदमी और एक --

औरत दिखाई दे रही है बैठी हुई हैं सामने की साइड में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

बोर्ड लगा हुआ है कुछ पेंटिंग टंग रही हैं।

बने हुए हैं स्टेज के ऊपर कुछ सामान रखा हुआ है।

ग्राउंड दिखाई दे रहा है जहां पर कुछ मेजें पड़ी हुई हैं साइड में वाइट कलर की कुर्सियां भी रखी हुई है डेस्टवीन दिखाई दे रहा है।

कुछ मकान भी दिखाई दे रहे हैं कुछ पौधे नजर आ रहे हैं।

के बराबर अलमारी में कुछ शेटें रखी हुई हैं नीचे की साइड में--

बाहर की साइड में एक मकान दिखाई दे रहा है।

तो आदमी बाइक करते दी उ उ बात करते दिखाई दे रहे हैं कुछ बाइकें भी खड़ी हैं।

कुछ येलो कलर का पर्दा दीवाल पर बिछा हुआ है एक चेयर भी लगी हुई है।

हॉल है हॉल में पांच वाइट कलर की गाड़ी--

से दीवाल बनी हुई है कुछ वायर जा रही है लाइटिंग वगैरह हो रखी--

सामने की साइड में मैदान है मैदान में कुछ पेड़ नजर आ रहे हैं कुछ मकान भी दिखाई दे रहे हैं।

सीढ़ियां दिखाई दे रहीं हैं सीढ़ियों के साइड मे ही एक ए_टी_एम हैं ए_टी_एम के अंदर--

ब्लू कलर की शर्ट पहन रखी है एक ने येलो कलर की शर्ट पहन रखी है ए_टी_एम की दीवार पर कुछ बैनर टंग रहे हैं एसी दिखाई दे रही है लाइट जल रही है ।

तीन आदमी खा खाना खाते हुए दिखाई दे रहे हैं एक मेज है मेज पर रेड कलर का कपड़ा पड़ा हुआ है दो थालियां नजर आ रही है।

एक मेज दिखाई दे रही है मेज पे ग्रीन कलर की कारपेट बिछी हुई है जहां पर कुछ--

शीशे के गिलास रखे हुए हैं उसके बराबर--

पानी की बोतल रखी हुई है ऊपर दीवार के ऊपर अलमारी में कुछ वाइन की बोतल रखी हुई है सामने एक खिड़की दिखाई दे रही है खिड़की के बाद--

बच्चे बैठे हुए हैं सामने की साइड में एक रोड दिखाई दे रही है जहां पे--

मेज दिखाई दे रही है जहां पर एक स्टूल भी नजर आ रहा है सामने की साइड में रेड ग्रीन कलर की कारपेट बिची हुई है।

ऊपर एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है अंदर की शा साइड में--

सामने पीछे को अलमारी में बहुत सी बुक्स रखी हुई हैं ऊपर लाइट जल रही है।

एक रोड दिखाई दे रही है रोड के बराबर में एक शॉपस् नजर आ रही है सिढ़ियां दिखाई दे रही है रोड के बाहर ही--

एक रुम है रुम में चार मेजे बिछी हुई हैं जिनकी साइडों में--

एक हॉल है हॉल में बहुत से बच्चे डांस कर रहे हैं एक आदमी फोटो ले रहा है ऊपर की साइड में--

एक शॉप है शॉप में एक आदमी बैठा हुआ है।

एक मेज है मेज पर एक कटोरी और गिलास रखा है एक पिन्नी की थैली टग रही है।

के गेट पर एक आदमी खड़ा हुआ है।

सामने मिट्टी का टीला डला हुआ हैउसके सामने कुछ घर मकान बने हुए हैं।

दिखाई दे रही है रोड की दूसरी साइड में एक बड़ा सा कंटेनर --

एंड उधम सिंह रोड लिखा हुआ है सामने कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं दो पानी की टंकियां भी वाइट कलर की रखी हुई है।

रखी हुई हैं जहां पर कुछ कुर्सियां भी पड़ी हुई हैं।

एक रोड दिखाई दे रही है रोड के सामने एक मकान है मकान के सामने एक गेट दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान नजर आ रहा है एक पेड़ भी दिखाई दे रहा है।

एक मेज दिखाई दे रही है मेज पे पानी का जग रखा हुआ है उसके सामने--

एक बेड है बेड पर एक बेड रखा हुआ है सामने दीवार पर--

ब्लू कलर हो रखा है एक गेट भी नजर आ रहा है कुछ स्विच भी दिखाई दे रहे हैं।

है उसके सामने एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई दे रही है कुछ ठेले भी दिखाई दे रहे हैं।

एक शॉप है शॉप में दो आदमी बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं उनके पीछे--

रोड है रोड में के किनारे एक बस दिखाई दे रही है बस में एक आदमी चढ़ रहा है जिसने जैकेट पहन रखी है।

रखी है दो आदमी सामने खड़े हुए हैं उपर --

साइड में खंभा है खंभे के ऊपर एक वायर जा रही है एक मकान भी दिखाई दे रहा--

एक मैदान है मैदान में दो स्कूटी खड़ी हुई है दो कारें खड़ी हुई है सामने की साइड में कुछ पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

साइड में कुछ बिल्डिंग नजर आ रही है कुछ गाड़ियां भी खड़ी हुई हैं।

कुछ मेज रखी हुई हैं मे कुछ कुर्सियां रखी हुई हैं सामने कुछ पेड्स रखे हुए हैं।

गमले दिखाई दे रहे हैं सामने की साइड में एक--